मछली खाना किसे नहीं देख रहें यह झींगा मछली का दस --

यह पीले कलर का गेंदे का फूल का दृश्य है जो काफी सुंदर लग रहे हैं देखने और गेंदे फूालों को अक्सर भगवान के पूजाो में और मंदिरों में अक्सर प्रयोग किया जाता है।

जब से बनाया गया है यह सारे स्टील के ग्लास हैं और इन्हें एक के ऊपर एक सजा कर इमारत के जैसा खड़ा किया गया है और यह बड़ी सुंदर लग रहा है देखने में।

बहोत सी महिलाऐं यहाँ पर बैठी हुई हैं जो सुन्दर-सुन्दर वस्त्र पहने हुए हैं और यहाँ बच्चे भी हैं जिन्हें हम देख पा रहे हैं। इस घर में कोई फंक्शन या कोई कार्यक्रम की स सजावट हुई --

आगे भी एक आदमी बैठा है। और कुछ आदमी काउंटर के पास खड़े होकर अपना काम करवा रहे है। वेटिंग रूम काफ़ी बड़ा है और कई लोग बै --

सामने जो हम तस्वीर यह एक पार्सल ऑफिस के बाहर का जहाँ लोग अपने पार्सल्स को लाते हैं पहुंचाने के लिए एक स्थान से दुसरे स्था--

सामने का दृश्य एक ए.टी.एम. के बाहर का दृश्य है। यह ए.टी.एम. का जो बाहर दृश्य है। यहा एक कार खड़ा है। गड़िया खड़ी है। लोग खड़े है। लोग अंदर जा रहे है। कुछ बाहर --

कौन नहीं जानता की योगा काफी सेहतमंद है। अपने शरीर के लिए सामने जो हम देख रहे हैं वो एक --

यह वो दृश्य या है जिम का दृश्य है जहाँ लोग जिम कर रहे हैं। अपने स्वस्थ को अपने स्वास्थ को अच्छे रखने के लिए और एक जिम ट्रैनर है जो उन्हे गाईड कर रहा --